इस ऑफिस में दो स्टूल लगे है।

ये हैं एक पहाड़ी इलाका है।

इसके वहाँ बहुत साड़ी रैक लगी हैं।

यहां तीन बड़ी वाशिंग मशीन हैं।

यहाँ बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं।